य यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें डेर सारे वैफर्स चॉकलेट्स ओ कोल्ड ड्रिंक्स वगेरा रखी हुई है।

पर पी.ओ.पी. मे लाइट व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहे है जो की हरे कलर के है और नीचे टाइल्स लगी हुई है और दिवाले मुझे क्रीम और मैरून कलर की दिखाई दे रही है।

यह एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जिसमे एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है इस मे कुछ लोग चल रहे है जिसने अपने बैग टंगा हुआ है काला नीला पीला कलर का।